पास ही मुझे छोटे छोटे घास दिखाई दे रही है जो की ग्रीन कलर की है इसमे मुझे कुछ फूल्स भी दिखाई दे रहे है जो की येलो कलर के है ।

दोनो पेंट में ही जेब है एक मंदिर के पीछे एक पेड़ है जो की ग्रीन कलर का शो हो रहा है ।

हां इसमे मुझे रेल की पटरियां भी दिख दिखाई दे रही है ।

ऊपर मुझे ब्लैक कलर में एक पंखा दिखाई दे रहा है ।